खंभा बना हुआ है यहाँ पेड़-पौधे दिख रहे हैं ये एक मकान बना हुआ है| यहाँ कुछ--

बेंचे रखी हुई है यहाँ लाइट्स दिख रही है।